इस तरीफ पत्थर हमे यह दिखाई दे रहे है। यह पर हमे दो खंबे दिखाई हुई दे रहे है। यहा हमें बादल हमे दिखाई --

ऊपर हमे बहुत सारी खिड्किया दिखाई दे रही है दरवाजा दिखाई दे रहा है बादल--

एक हमे घर दिखाई दे रहा है एक हमे केंद्र कार्यक्रम दिखाई दे रहा है। एक हमे इस्क इस घर का कलर पीले कलर का है।

हमे यहा पे एक स्कूल दिखाई दे रहा है जिसका कलर जिसपे उनकी दिवार है जो वो येल्लो कलर की ऑरेंज कलर की है यहा पर रेड कलर का भी है।

यहा पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए है यहा पे बहुत सारी गमले भी रखे हुए है। और यहा पर जो स्कूल का नाम है ऑरेंज कलर से लिखा गया है।

हमे एक बोर्ड दिख रहा है जो की नीले कलर से लिखा हुआ है और हमे बहुत सारे पेड़ यहा पे दिखाई दे रहे है साथ मे एक घर भी दिखाई दे रहा है।